ये को ब्लू कलर के कपड़ा पिनहले छै एगो अ उजला कलर के कपड़ा पिनहले छै पार्क छै।

तो तो ओकर लाल छै हरा कलर के फुल गाछ ऊछ छैकितना अच्छा बगीचा लगय छै देखे में ।

बाउल लागल छे बुलु कलर के पर्दा लगलो छे।

एगो मैन रोड छै केतना बड़ा पहाड़ छै एगो मोटरसाइकल छै।

पेड़ छै पानी नहर छैगिरी रहलो छैबहुत अच्छा देखे में लगे छै।